यहां पे नीले रंग का जैकेट पहना हुआ है चार आदमी पिछे जाली दिख रहा है।

इसके अंदर ऊपर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।